इस शहर में बहुत से अच्छे कपड़े मिलते हैं और सस्ते सुंदर टिकाऊ कपड़े मिलते हैं यहां पर लाइटें जल रही है ये बहुत अच्छी दुकान है

यहां पर सभी प्रकार की मेडिसिन मिलती है जिससे लोगों को राहत मिलती है मेडिसिन सभी के लिए --

यह एक प्लेटफार्म है यहां पर एक ट्रेन खड़ी है यहां पर बैठने के लिए सुविधा भी है कुछ लोग अपना --

ऊपर पानी की टंकी भी रखी हुई है पास में बहुत सी सुई दए हैं इसलिए हमें--

यह एक रूम है यहां पर बहुत से पिल्लो पड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा रूम है यहां पर एक पलंग भी है।

यहां पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं बा पास में इसके बहुत ही खुली जगह है एक व्यक्ति आ रहा है।

कंप्यूटर भी है कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं यहां पर लाइटें जल रही है यहां पर कैमरे भी है पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक कमरा है जहां पर बहुत सारे पिल्लो पड़े हैं यहां पर लाइट भी लगी हुई है यहां बहुत ही अच्छा गद्दा है।

यह एक गांव में खेल का मैदान है यह बहुत ही अच्छा मैदान है यहां पर--

खेलना चाहिए खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमेशा खेलना चाहिए हमें।

यह एक घूमने का स्थल है जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं।

खेल रहे है झूलों पर तो कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं कुछ फिसल पट्टी पर खेल रहे हैं।

यह एक दूल्हे की फोटो है यहां पर जिसकी शादी हो रही है।